और पीछे पांचाली लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

सीलिंग पर लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक ने सफ़ेद यूनिफार्म पहन रखी है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है जिन्होंने ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए है और वो प्लैंक कर रहै है।

एक गार्डन मे रिसोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है जिसके राइट साइड गार्डन है बीच मे से रास्ता जाता हुआ दिख रहा है।

कुर्सी पे बैठा हुआ दिख रहा है नाइ का हाथ दिखाई दे रहा है सीलिंग पर फैन दिख रहा है और पीछे लाइट सी लगी हुई है और एक घड़ी भी नज़र आ रही है।

--किंग नज़र आ रही है जहाँ बहुत सारी गाड़िया पार्कड है जिनमे से एक का कलर नीला है।

एक खम्बा नज़र आ रहा है उसके ऊपर लैंप लगा हुआ है एक पेड़ नज़र आ रहा है।

एक आधी बॉल दिख रही है जिम की मशीने दिख रही है जिनका कलर काला और पीला है।

निचे कारपेट दिख रही हैं जिसका कलर लाल है और मैट्स भी दिख रहे हैं जिनका कलर काला है।

घास दिख रही है और टाइल्स दिख रही है सीलिंग पर बड़े-बड़े लाइट नज़र आ रही है।

नज़र आ रहै है किसी ने झूमर तो किसी मे लैंप दिख रहा है एक बच्चे के हाथ मे कैची --

ज़मीन पर किसी जगह घाँस उगी हुई नज़र आ रही है।